जहां पर कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत बड़ी सी सीढ़ी भी दिखाई दे रही है यहां सामने की तरफ--

छोटी सी दौड़ती हुई दिखाई दे रहीं है।

बहुत बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक आदमी रिसेप्शन पर बैठा हुआ है।

और सामने की तरफ कुछ गमले फर्श पे रखे हैं।